चारों तरफ हरी हरी घास है।

यहां पर एक मेट्रो स्टेशन या एक बड़ा सा एयरपोर्ट दिख रहा है।

लाइन का एरिया लग रहा है।

यहां नीले रंग का एक डस्टबिन रखा है।

उसके पास एक ढाबा भी लगा हुआ है।

यह जम्मू कश्मीर का एरिया लग रहा है।

पास में और भी दुकाने दिख रही हैं।

यहां पर एक बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पर कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो बॉलीवॉल खेल रहे हैं।

यहां पर दो भैंस दिख रही हैं।

सामने एक छोटा सा ढाबा दिख रहा है।

यह एक ढाबा लग रहा है।

शीशे का इसे बनाया गया है।

यहां एक आदमी समुंद्र के किनारे बैठा हुआ है।

यहां पर एक आदमी खड़ा है।

यहां कार में शीशा लगा है।

इस पिक्चर में मुझे एक महिला दिखाई दे रही है।